ये इसके दोनों तरफ गेट लगे हुए है बीच में बड़ा एक गेट है साइड साइड में दो छोटे गेट है लाल कलर के देखने में बहोत ही अच्छे लग रहे है प्रीमियम का --

हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा है जो इसके जिम के बाद करके बहुत ही अच्छा लग रहा है लाइटिंग वगैरह कलर बहुत ही अच्छा --

यह एक मोर है जो नाच रहा है पंखों को फैला के।

पेड़ के बहोत आकर्षक लग रहा अलग अलग टाइप का--

एक फूलों की शॉप है इसमें बहुत सारे फूल दिख रहे हैं गेंदे के।

ये एक कैफे के अंदर भी फोटो हैं।

गुलाब का बुके है बहोत सारे मिक्स फूलों के बुके बना रहे हैं यहां पे--

की बस ये ब्लू कलर यहां पे हुई खड़ी है।

और एक काउंटर भी है व्हाइट कलर का बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका टेक्सचर --

काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे है बैकग्राउंड में पेड़ पौधे भी है चारों ओर अच्छा लग रहा--

एक स्कॉर्पियो गाड़ी हैं व्हाइट कलर की।

इसमें बहोत सारे काफी लोग मतलब यहां कॉफी पीने के लिए आए हुए हैं।

कॉफी करके है इसका नाम।

और बच्चों के द्वारा अलग अलग प्रस्तुतिती दी जा रहे है काफी सारे बच्चे यहां पे प्रस्तुत हैं।

कर रहा है।

पानी में से दूध की धारा बह रही है चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली है।